ये काफी अलग सा दिखाई दे रहे है उसके अंदर चले जा रहा है --

काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और देखिए इधर टाइल्स बहुत टुकड़ा-टुकड़ा कटा हुआ है इधर कुछ अलग सा गेट - उट दिख रहे ।